awk command के spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम awk command सीखेंगे
हम यह कुछ उदाहरणों के माध्यम से सीखेंगे
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
ध्यान दें इस tutorial के अभ्यास के लिए gnu bash version 4 या उससे नए की सलाह दी जाती है
अब awk के परिचय के साथ शुरू करते हैं
awk command बहुत प्रबल text मॅनिप्युलेशन यानी जोड़तोड़ करने का tool है
इसका named इसके लेखकों aho weinberger और kernighan पर दिया गया है
यह अनेक functions क्रियान्वित कर सकता है
यह record के क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है
अतः यह record के अलगअलग क्षेत्रों को आसानी से access और edit कर सकता है
अब कुछ उदाहरण देखते हैं
प्रदर्शन उद्देश्य के लिए हम awkdemo txt file प्रयोग करते हैं
अब awkdemo txt file की विषय वस्तु देखते हैं
अब terminal खोलें
awk देखते हैं awk command प्रयोग करके कैसे print करते हैं
type करें:
enter दबाएं
यहाँ pass चुनाव मानदंड यानी selection criteria है
awkdemo की सारी lines जहाँ pass होता है printed की जाती हैं
यहाँ क्रिया यानी action print है
हम awk में regular expressions यानी नियमित व्यंजक भी प्रयोग कर सकते हैं
mira हम mira नामक छात्रा के records print करना चाहते है
हम type करेंगे:
enter दबाएं
* ऐस्टरिस्क पिछले character की एक या अधिक उपस्थितियों को देगा
इसलिए i e और a की एक से अधिक उपस्थितियों वाली प्रविष्टियाँ सूचीबद्ध की जाएँगी
उदाहरण के लिए
* mira के साथ mira
* meera के साथ meera
* meeraa के साथ meeraa
awk extended regular expressions ere का समर्थन करता है
जिसका मतलब है कि हम pipe के द्वारा विभाजित कई patterns का मिलान कर सकते हैं
अब मैं prompt clear करती हूँ
अब type करें:
awk स्पेस सिंगल क्वोट्स में फ्रंट स्लैश civil pipe electrical फ्रंट स्लैश स्पेस कर्ली ब्रैकेट खोलें {print} कर्ली ब्रैकेट बंद करें क्वोट्स के बाद स्पेस awkdemotxt
enter दबाएं
अब civil और electrical दोनों की प्रविष्टियाँ दी हुई हैं
अब अपनी slides पर वापस जाते हैं
पैरामीटर्स : एक line के विशिष्ट क्षेत्रों को पहचानने के लिए awk कुछ विशेष parameters रखता है
$1 dollar 1 पहले क्षेत्र को दिखाता है
उसी प्रकार सम्बंधित क्षेत्रों के लिए हमारे पास $2 $3 और अन्य हो सकते हैं
$0 पूरी line को दर्शाता है
अपने terminal पर वापस आते हैं
ध्यान दें awkdemo txt file में प्रत्येक शब्द pipe से अलग हुआ है
इस स्थिति में pipe delimiter कहलाता है
delimiter शब्दों को एक दूसरे से अलग करता है
delimiter single वाइटस्पेस भी हो सकता है
एक delimiter को स्पष्ट करने के लिए हमें देना है माइनसcapital f flag के बाद delimiter
अब देखते हैं
type करें awk space माइनस capital f space double quotes में pipe quotes के बाद space single quotes में front slash civil pipe electrical front slash curly bracket खोलें {print space dollar0 0} curly bracket बंद करें quotes के बाद space awkdemo txt
enter दबाएं
यह पूरी line prints करता है चूँकि हमने $0 प्रयोग किया है
ध्यान दें कि names और छात्रों की stream दूसरे और तीसरे क्षेत्र हैं
माना हम सिर्फ दो क्षेत्र print करना चाहते हैं
हम उपरोक्त command में $0 को $2 और $3 से बदलेंगे
enter दबाएं
केवल दो क्षेत्र दिखाए गए हैं
यद्यपि यह ठीक परिणाम देता है पर display पर यह अव्यवस्थित दिखता है
हम c स्टाइल printf statement प्रयोग करके output को व्यवस्थित रूप we सकते हैं
हम built इन यानी अन्तर्निहित variable nr प्रयोग करके क्रमांक भी we सकते हैं
हम अन्तर्निहित variables के बारे में अधिक आगे के ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे
अब type करें
enter दबाएं
हम अंतर देखते हैं
यहाँ nr records की संख्या के लिए है
records integers हैं इसलिए हमने % d लिखा है
name और stream strings हैं अतः हमने % s प्रयोग किया है
यहाँ 25s name क्षेत्र के लिए 25s स्थान आरक्षित करेगा
15s stream क्षेत्र के लिए 15s स्थान आरक्षित करेगा
माइनस साइन output को left justify करने के लिए प्रयोग होता है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
अब अपनी slides पर वापस जाते हैं
इसको सारांशित करते हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न सीखा awk प्रयोग करके प्रिंट करना
awk में regular expression का प्रयोग करके विशेष स्ट्रीम की प्रविष्टियाँ सूचीबद्ध करना
केवल दूसरे और तीसरे क्षेत्रों को सूचीबद्ध करना
व्यवस्थित output दिखाना
नियत कार्य में
अंकित सर्राफ का roll नंबर stream और marks दर्शाएं
नीचे दिए link पर उपलब्ध video देखें